यह एक क्रैन मशीन जिसका प्रयोग हम खुदाई के लिए करते हैं| यहा पे खुदाई हो रही है कुछ लोग खड़े हुए है यह ट्रेनमशीन बहोत ही लाभ फायदे मंद होती है जिससे की हमारे बोहोत काम आसान हो जाते हैं ।

और बाहर एक टेम्पो खड़ा हुआ है और बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है और बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है और सेकेंड पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक कार खड़ी हुई है जो कि गैरेज मे खड़ी हुई है जिसको रिपेयर करना है उसका टायर घिसा हुआ है।

टेम्पो खड़ा हुआ है जोकि पेट्रोल और डीजल डलवा रहे है और बाइक मे डलवा रहे है।

खाने में बहोत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे खाने से हेल्थ बनती है।

ये रोड है जहां पर कि वाहन चलते है जैसे कि टैम्पू गाड़ी-वाड़ी वगैरह चलते हैं। यहां से हम अगर बस स्टैन्ड से कही भी जा सकते हैं।

ये बाजार है जिसमे कि सब्जियों कि बहोत सारी दुकान लगी हुई है जो सब्जी मंडी लग रही है इसमे --

ये एक कपड़ों की शॉप है जिसमे कि तह पे कपड़े रखे हुए हैं जो कि --

ये कोई नदी या कोई तालाब है जिसमे कि बहोत सारी नाव रखी हुई है जोकि नाव से हम --

ये एक रोड है जहां पर की बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ।